एक फ्रिज जोकि ठंडा पानी पीने और रखने के लिए उपयोग होता है।

एक आदमी चेयर पर बैठे हुए हैं।

नीचे टाइल्स भी बिछा हुआ है जो कि हम लोग के सुविधाजनक का काम करता है।

के लिए कुर्सियां भी हैं।

और कई सारे लोग भी हैं उपस्थित।

और एक कुर्सी भी रखा हुआ है।

पानी पीने के लिए जग भी है।

अलमारी भी यहां पर उपस्थित है।

अभी अभी तोड़ा गया है फूलों को।

इस फोटो में हमें दिखाई दे रहा है कि ये एक स्विमिंग पूल है।

गाड़ी को सर्विसिंग करने के लिए कुछ सामग्री भी है जो की नाट पहना है।

में वो आदमी भी दिखाई दे रहा है।

इस फोटो में हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है कि ये एक पार्क है।

यहां पे कई सारे लोग पुजा करने में व्यस्त है।

कई सारे लाइटे भी लगा हुआ है।

घड़ी भी दिखाई दे रहा है।

कई अनेक सारे लाईटें भी लगी हुई हैं।

दूर दरार में पेड़ भी है।

यहां पर साइड में रोड भी है।

तीन आदमी बालू में लेटे हुए हैं।

सूर्य की किरणें आ रही है।

जमीन पर पानी भी है।

कुर्सियां ब्लैक कलर की है।

इस फोटो में हमें दिखाई दे रहा है कि यह एक पार्क है जो घूमने की जगह है।

फेवीक्विक है और कई सारे सामान हैं।

कई अनेक सारे फाइबर की गिलास भी है।

डस्टबिन फेंकने वाला कूड़ादन भी है।

यहाँ पर एक पेंडल है नीचे कई प्रकार के सामग्री रखे हुए हैं जैसे की लोहा ड्रम कई सारे पेड़-पौधे भी है।

एक टेबुल भी दिखाई दे रहा है।

एक दरवाजा और एक खिड़की भी है।